इस तस्वीर में यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो योगा क्लास अटेंड कर रहे हैं । यह एक --

योगा क्लास है | जहाँ पर लोग बाग योगा अटेंड कर रहे हैं ।

और यहाँ पर कार बस के सड़क के दूसरी ओर एक मार्केट भी दिखाई दे रहा है ।

और इस किले में खूब सारे दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और यह किला बोहोत पुराना दिखाई दे रहा है ।

यह तस्वीर एक अ सड़क के किनारे बनी हुई दुकानों की तस्वीर है जहाँ पर अ म स्टोर है छोटे-छोटे और यहां पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ।

इस तस्वीर में मुझे एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र दिखाई दे रहा है और यह जो बोर्ड है इस बोर्ड पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और इस बोर्ड के नीचे एक शटर लगा हुआ है।

अ जहाँ पर राशन का सामान मिलता है और इस ग्रॉसरी स्टोर के बाहर कुछ टू-व्हीलर फोर-व्हीलर गाड़ियाँ भी खड़ी दिखाई दे रही है।